लोहे के खम्बे लगे दिखाई दिखे कई सारी वायरिंग यहां से वहां गई हुई--

फाटक बना हुआ दिखाई दे लोहे की कई सारी रेलिंगें लगाई गई हैं लोहे सारे--

जिसमें आजू बाजू कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें एक स्कॉर्पियो

हल्की हल्का बादल बना हुआ दिखाई दे रहा बारिश का समय दिखाई दे रहा तूफान आते हुए दिखाई सम्भावना दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में सामने की ओर एक घड बना बना दिखाई दे रहा है जो नीचे की ओ वाइट कलर का पोता गया ऊपर की ओर इन इन इंक से पोता गया हुआ--

की एक ड्राइंग बनाई दिखाई दिखाई दे रही एक कलर का प्लस का आईकॉन बना बना हुआ दिखाई दे रहा और नीले कलर का बना हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने का बहोत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लंबे लंबे पेड़ पौधे लगे हुए साइड में एक रोड जाती हुई दिखाई दे रही है।

आमने सामने कि ओर किसी लाइटिंग जलती हुई दिखाई दे बड़े बड़े झाड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नदी बहती हुई दिखाई दे रही नदी के अंदर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक बहुत बड़ा हॉल भी दिखाई दे रहा है इस हॉल में लाइटिंग लगाई गई है जो की जल्ती हुई दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहे हैं कई सारे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने की ओर।

आजू-बाजू नीचे की ओर मैट भी लगाई गई है जो हरी-भरी घास दिखाई दे रही है गार्डन में लोहे की कई सारी चीजे लगाई गई है रात का समय है।

फिर भी गाड़ी पे प्लेटफॉर्म लगे हुए दिखाई दे रहे हैं लोहे की कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में एक एक फैटी दिखाई दे रही है जिसमें की ओर--

दो मंजिले का घर बना हुआ दिखाई दे कांच लगाई गई निचे कि ओर पीले कलर से पोता हुआ घर दिखाई दे रहा--

ऊपर की ओर कई सारे कुत्ते बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं एक इंसान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर--

बेंच रखी हुई दिखाई दे रही है दोपहर का समय है दीवाल में वाइट कलर का पोता हुआ है व्हाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।

टीन से बनी हुई इस साइकिल में बनी हुई दिखाई दे रही है।

कई सारे लंबे लंबे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं नीचे की ओर कई सारे फूल कई सारे ईट लगाई गई हैं।

दिवाल में व्हाइट कलर का पोता हुआ दिवाल --